ड्रेस पहने है चश्मा लगाए है कुर्सी पर बैठे हुए है घड़ी है तारा जैसा चित्र बनाया गया है दिखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।

एक तालाब है तालाब बहुत सुन्दर है इसमें पानी हरा-हरा दिखाई दे रहा है कहीं काला दिखाई दे रहा है तालाब के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है पेड़ बहुत अच्छा है जैसे पेड़ है पानी भी बह रहा है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।